व्यक्ति खड़ा है जिसने एक पिस्ता कलर की शर्ट पेहनी है और क काले कलर की चश्मे लगया हुआ है। साइड में हमे कुछ खेत दिखाई दे रहा है। इनमे हरा-भरा दिखाई दे रहा है और --

बड़े-बड़े पेड़ ले के पेड़ लगे है कही पतझड़ वाली पेड़ है और कही सूखे है और कही हरे-भरे पेड़ है सामने हमे एक --

इस तस्वीर में हम देख पा रहें हैं यहाँ पर हमें एक चबूतरा दिखाई दे रहा है जिस पे जीन जिस पर सीढ़ियां बनी हुई हैं और तीन अ --

इस तस्वीर हम देख पा रहे है। यहाँ पर हमें बोहोत सारे अ बस स्टैंड की तस्वीर है जहां जहां बोहोत सारे पैसंजर बैठे हुआ है। बोहोत सारे सोफे लगे हुए है। सामने एक व्यक्ति--

और आधे पे टाइल्स लगे हुए है कुछ डमी खड़े हुए --

अ स्टूल पर बैठा हुआ है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है | अ-अ उससे बड़ा वाला एक और कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसने फीरोजी कलर की शर्ट पहनी है | एक बच्चा --

अ चम्मच रखे हुए हैं और कुछ जग और गिलास --

सलवार एक ने ब्लू कलर की शर्ट और एक ने ग्रे क्रीम कलर की शर्ट पहनी हुई है कुछ बेड --

सामने बहुत सारी कुर्सियां लगी है जिनका कलर काला है और टेबल लगी है ऊपर टिन शेड डले हुए हैं टिन शेड सफेद कलर के है एक पंखा लगा है।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

लाइट लैंप बना रहे हैं कुछ लड़के बना अ कर कंप्लीट हो गया हैं और कुछ लड़के बना रहे हैं। सभी लड़कों के मास्क लगा है। सामने टीचर खड़े हुई है जिन्होंने वाइट --

इस तस्वीर मे हमे फूलो की मालाएं दिखाई दे रही है कुछ मालाएं सफेद और कुछ मालाएं गेंदे की और कुछ मालाएं सूखी हुई है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक कंकाल दिखाई दे रहा है कंकाल लेटा हुआ है और कंकाल एक टेबल पर लेटा हुआ है टेबल पर चादर बिछी हुई है जिसका कलर ब्लू है।

इस तस्वीर में हमें एक फाइनेंस अकाउंटिंग एक्सप्रेस दिखाई दे रहा है सामने एक उम्म फूलों से बना हुआ गेट बना है।

दूसरी बस पीछे जा रही है सड़-सड़क के उस सड़क पर एक --

और नीचे अ एक ने ऑरेंज और एक ने पिंक एक ने पर्पल कलर की मेट बिछाए हुइ है दोनों बच्चो ने --

तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर बहुत सारी चींज़े ए ऑटो रिक्शा साइकिल मोटर साइकिल आ रहे है और जा रहे है कुछ बिजली के खम्बे और स्ट्रेट लाइट दिखाई दे रही है कुछ बिजली के तार दिखाई दे रहे --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें ए वन इंजीनियर पार्लर दिखाई दे रहा है इस पार्लर की साइड में मां सीता करके एक और दुकान दिखाई दे रही है जिस पर पंखे रखे हुए है ।

और एक बाइक खड़ी है आ साम ए वन एन.जे.बी. पार्लर पर ए दो साइकिले दिखाई दे रही है एक बच्चा बैठा है और एक बच्चा खड़ा है सामने एक स्टूल है और एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है।

लोहे का है जो की हरिहर कलर का है साइड में एक खंभा लगा है खंबे के साइड में एक बड़ा --

इस तस्वीर में हमें एक पार्लर दिखाई दे रहा है जिसमें दो कुर्सियां रखी हुई हैं जिसका कलर कथई और सामने कांच लगे हैं ।

की दुकान दिखाई दे रही है ऊपर टिन शेड बना हुआ है टिन शेड पर ब्लू कलर का एक और बैनर दिखाई दे रहा है जिस पर अरुण मोटर --